यहां पर कुछ टॉवर जैसे ही बना हुआ है मंदिर-मंदिर मे कोई मेला दिखाई दे रहा है जिसमें टॉवर जैसा ही कुछ बना हुआ है काफी सारे लोग खडे है।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

कलरफुल कपड़े टंगे हैं जिसके बाहर एक पुतला खड़ा है उसने भी कपड़े पहने हैं और इन दुकानों के बाहर--

ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो लाइटों से काफी सुंदर लग रहा है बहुत सारी लाइट हैं इसमें और काफी डेकोरेशन भी हो रखी है इसमें लाइटों से फूलों से।

ये एक ऑफिस का सीन है जिसमे बहोत बड़ी टेबल है वाइट कलर की जिसपे लैपटॉप रखा है एक फोन रखा है।

एक ऑफिस का सीन है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने है काफी सारे ब्लू कलर के और हर कंपार्टमेंट के अंदर लैपटॉप रखा हुआ है चेयर लगी है।

ये एक बहोत बड़ा मैदान है जहां बहोत सारे लोग हैं कुछ लोग खेल रहे हैं कुछ खड़े हैं।

एक बहोत बड़ा अ मैदान है जो काफी सारे बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें पहन कें खड़े हैं बच्चे भी बड़े भी।

कोई गेम खेलने के तैयारी में है वो और बिल्कुल कोने में लाइन से पेड़ बने हुए है छोटे बड़े--